यह पार्क में झंडा भी फहराया जाता है।

परामर्श केंद्र जहानाबाद का है।

यहाँ इंटर आई.टी.आई. की तैयारी किया जाता है।

और ये बोहोत अच्छे से आँख को ठीक करते है और बोहोत आदमी इसके पास ठीक कराने के लिए आते है और ये दस बजे से चार बजे तक शाम तक ये खुला --

बहुत आदमी यहाँ गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल बहुत बड़े-बड़े गाड़ी भी हैं और यह रोड बहोत ज्यादा ख़राब --